टिव लाइट दिख रही है और छोटे-छोटे पौधे दिख रहे हैं ।

लाइटो से घर को सजाया गया है ऊपर लाइट लगी हुई है बगल में लाइट लगी हुई है।

मुर्गे का टुकड़ा दिख रहा है एक-दो और गिलास है जिसमें कुछ समान डला हुआ हैं ।

एक छोटी -सी टी.वी दिख रही है ब्लैक एंड वाइट एक लड़का बाल कटा रहा हैं।

मैन्यू कार्ड दिख रहा है ज़मीन में फर्श है।

छोटी- सी मंदिर दिख रही है मंदिर में क्रीम कलर का पेंट हैं ।

और ऊपर अजंता डेविल लिखा हुआ है लाइट दिख रही है सफ़ेद कलर का पेंट है देरी मे--

डांस क्लास के अंदर के तस्वीर है कुछ लड़के डांस कर रहे है एक डांस ट्रेनर है वो जैसे कर रहे है वैसे लड़के भी कर रहे है।

ग्राउंड है ग्राउंड में घास है कुछ हरी-हरी घास है लाल मिट्टी दिख रही हैं ।

बड़ा सा हॉल है हॉल में एलइडी टीवी लगी हुई है उसके बगल में ए सी लगी हुई है।